यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है। जिस पर फूलो का गुलदस्ता रखा हुआ--

यहाँ पर मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर वाशिंग मशीन दिखाई दे रही है।

शॉपिंग मॉल के सामने एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर कुछ महिलाये एक कार्यक्रम मे गरबा करते हुए दिखाई दे रही है उसमे कुछ --

यहाँ पर मुझे कुछ फूल पौधे दिखाई दे रहे है और कुछ व्यक्ति जो--

मुछे यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जहा पर --

हम्म हाथ में नजर आ रहा है साथ यहाँ एक जंगल दिखई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ मुझे एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं। जहाँ पर कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ मुझे एक बड़ा सा तालाब नज़र आ रहा है।

यहाँ कुछ वृक्ष लगे हुए नज़र आ रहे है जो तालाब के आस पास लगे हुए है।